यह मेरी सोसाइटी का पार्किंग एरिया है जहाँ पे बोहोत सारी कारें अलग-अलग रंग की पार्किंग पर लगी हुई हैं।

यह एक बिल्डिंग है जोकि ग्रीन और वाईट कलर मे हैं इसमे कांच भी लगा हुआ है और बाहर बहोत सारी कार पार्क की हुई हैं जोकि ब्लू वाईट ग्रे ब्लैक कलर की हैं।

के टैग्स लगाए हुए हैं। एक बच्चा यहां बैठा हुआ है स्टेज मे एक टेबल रखी हुई है जिसमे येलो रेड व्हाइट कलर के बेलूनस के डेकोरैशन किया गया --

इसमें की बोहोत सारे कलर्स किए हुए हैं जैसे कि ब्लू ग्रीन ऑरेंज ब्राउन और नाव में कुछ बेंचेस भी हैं।

रंग येलो कलर है और कुछ पौधे भी लगे हुए हैं।

यह एक शॉप है। शॉप के काउंटर पर लैपी और पेन होल्डर है। शॉप के अंदर एक लड़की स्टूल पर चढ़ कर सफाई कर रही है और शॉप में एक कोल्ड्रिंक फ्रिज भी है।

'' यह एक पार्क है जिसका नाम चिल्ड्रेन्स पार्क है। यह पार्क में एक ब्लैक कलर का गेट लगा हुआ है। ''

यह एक मंदिर है। मंदिर के बाहर शिवजी की बड़ी सी मूर्ति है जो की त्रिशूल भी पकड़े हुए हैं। शिवजी ने पीले रंग --

यह एक पार्किंग एरिया है। जहाँ पर बहोत सारी कार पार्क हो रखी हैं। सामने एक कार है जिसका कलर व्हाइट है।